मैकेनिक की दुकान है यह दुकान काफी पुरानी है।

यह सब बहोत ध्यान से योगा कर रहे हैं।

रात का समय है बहोत अंधेरा है।

स्कूल का नाम सागर ग्लोबल स्कूल है।

इसमें बर्थडे केक रखा है।

इसके पास बड़े बड़े खेत और बड़े बड़े गार्डन है।

इसमें बहोत सुंदर लाइट लगी है।

एक मैनेजर और एम्पलाई बात कर रहे हैं कंप्यूटर भी रखे हैं।

कांच के दरवाजे लगे हैं एक बड़ा सा काले रंग का--

यहां पर सामने एक मंदिर है भगवान की तस्वीरे रखी है।

सारे बच्चे चार्ट वगैरा प्रोजेक्ट वगैरा बनाते हैं।